यह एक कमरा दिख रहा है कमरे में एक दरवाजा है और एक स्टूल स्टूल रखा हुआ है उसपे कुछ सामान पड़ा है और एक टीवी दिख रहा है दिवार पर लगा हुआ पीछे पर्दा लगा है और बेड दिख --